ये एक पुल दिखाई दे रहा हैं ये रोड बना हुआ हैं पक्का और ये पुल नदी के ऊपर बना हैं नदी है या समुद्र है इसका पानी बहुत साफ दिख रहा है हमे--

आ ऊपर चड़कर ये जा रहे हैंऔर एक बोरी नीचे रखी हुई है और ये इसके ऊपर बोरिया लोड कर रहे है ये शयद सीमेंट की बोरिया है और उपर शेड डला हुआ--

सामने एक पिंक कलर का कुछ स्टेज बना है उस पे एक मूर्ति रखी हुई है आसमान हमें नजर आ रहा है यहाँ पर और सफेद रंग की बिल्डिंग है उसमें नीले रंग के कांच लगे हु --

हमें एक पुराना ऐतिहासिक कोई स्थल दिख रहा है और यहाँ पर बना हुआ हैं और एक हमें औरत दिखाई दे रही है जिन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है और स्टील की यहाँ पर रैलिंग लगी हुई--